और यहां पे काफी हरियालियां भी हैं।

जहां पे कई बेरायटी के मोबाइल आपको--

उसके पीछे पहाड़ भी मौजूद है और यहां पर काफी बड़ी बिल्डिंग भी है और काफी सारे लोग यहां इंजॉय कर रहे हैं।

और जो आप सामने देख रहे हैं।

जिससे हमें यहां सामान खरीदने की जरूरत है।

यहां काफी सारे कुर्सी टेबल लगे हुए हैं।

चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं और बीच में एक नदी बह रही है।